यहां चित्र स्कूल के बच्चों का है।

यह चित्र एक होटल का है।

यह बगीचा बहुत सुंदर दिख रहा है।

यहाँ लोगों ने अपनी कार खड़ी करी हैं।

यह चित्र एक किचन का है।

यहां हमें कई सारे रंगों के अलग अलग प्रकार के पर्दे मिल सकते हैं।

बकरियों के कान पे पीले रंग की स्लिप लगी हुई है।

यहां दो लड़के आपस में खेल रहे हैं।

पोस्टर पे एक सुंदर सा हाथी बना हुआ है।

इस चित्र में कई रंगों की अलग अलग प्रकार की बाइक खरीदी जा सकती है।

यह चित्र एक बैग की दुकान का है इस चित्र में अलग अलग रंगों के कई प्रकार के--

खेती कर रहे हैं कई सारी महिलाएं भी खेती में आनंद ले रही हैं।

यहां लोगों के बैठने के लिए कुर्सी और टेबल का भी इंतजाम किया गया है।

के द्वारा की गयी है यह बहुत रंग बिरंगा मंदिर है।